इस फोटो में ये कोई दुकान है इस दुकान में ये नमकीन के पैकेट पड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में ये एक दुकान है एक दुकान है ।

और पार्क में ये पेड पौधे हैं जो की अच्छे हरे भरे पेड पौधे हैं कुछ वक्ति भी अंदर नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति है जोकि इसे कुछ देख रहा है क कार का इंजन देख रहा है।

इस पार्क में ये बच्चे बैठे हुए हैं इनके हाथों में किताबें हैं वो कुछ लिख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं।

इस फोटो में ये कोई शहर का दृश्य है इसमें कुछ लेडीज कुछ होती हैं आ रहे है जा रहे है।

और कुछ घर भी नजर आ रहे हैं और ये पेड़ पौधे हैं वो भी अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।

इस फोटो में ये एक कोई दुकान है।

फ्रिज दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति की सामान खरीदने आए हुए हैं ऊपर ये लाइटें जग रही है व्हाइट कलर की।

ये कुछ ड बलूंस लगे दिखाई दे रहे हैं कुछ--

इस पार्क में ये फूल हैं जो कि बहुत ही अच्छे गुला गुलाबी कलर के फूल हैं।

इस फोटो में यह छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जोकि अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे हैं।